ये तस्वीर एक रोड की है जहा पर एक लाइट लगी हुई है काले रंग की और उसकी अतराफ काले और नारंगी कलर के --

पत्थर बिछे हुए है और उसकी थोड़ीसी दूरी पर एक बस स्टॉप है और कुछ पेड़ है हरे रंग के आसमान है।

तस्वीर एक लायब्ररी के रूम की है जिसका रंग काला है और उसके अंदर दो शेल्फ है उनका रंग हरा है और बहुत सारी किताबें है।

और ऊपर दीवार पर कुछ लगा हुआ है लाल और पीला कलर का जमीन पर पत्थर बिछाये हुए है और बहुत सारे रंग-बिरंगी किताबे है।

यह तस्वीर ओशन की है जो गाँव से जुड़कर उसके बहुत सारे नारियल के झाड है और कुछ मंदिर बने हुवे है। चारों तरफ पत्थर लगे हुवे है और दूर में पहाड है।

यह एक कमरे की तस्वीर है जिसके अंदर बहुत सारी लाइटें रखी हुई है कुछ बड़ी है कुछ छोटी है कुछ चालू है कुछ बंद है।

और कुछ दूर पर खंभे लगे हुए हैवहा पर पत्थर रखे हुए है और एक कुछ बैठने के लिए बना हुआ है।

ये तस्वीर एक शादी के फंक्शन की है जहाँ पर दो लोग दरवारी बने हुए है और बहुत सारे लोग अंदर जा रहे है हर रंग की लायटे लगी हुई है बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई है।

ये तस्वीर एक ए_टी_एम की है जहा पर बहुत सारे लोग है कुछ बाइक पर है कुछ रोड पर बैठे हुए है कुछ सीडी पर बैठे हुए है और कुछ अंदर खड़े हुए है और कुछ फोन पर बात कर रहे है।

कुछ बस मे जा रहे है और वहा पर कुछ दुकाने है कुछ लोग खड़े हुवे--